ये कोई शोप है। आयद यां जो भी है मगर गेंदे के फूल से काफी डेकोरेट की गई एंड --

यह एंड साथ ही साथ बुक भी है। यहाँ लिखा हुआ है यही एंड और लिखा है ऑनलाइन फॉर्म फोटोग्राफी यहीं सब होता है यहाँ पर काम।

ये बहुत सारी जो है मूर्तियां है। गणेश जी की है। दुर्गा जी की है शेर बिकॉज़ नीचे यह बना हुआ है और एक --

ये एक भइया हैं जो आज एक सेल्फी ले रहे हैं शायद और यह सेल्फी ही ले रहे हैं पीछे मिरर --

ओके यहाँ पर देखिये क्या हो रहा है मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है सारे में कैंडल्स लगी हुई हैं एंड काफी अंधेरा है।

यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है ये भी वही हैं जो भी हमने देखा था ऐसे ही ईटों से बनाये गये हैं ये कुछ छोटे छोटे डिब्बे टाइप ।